इस चित्र में बहुत सारी लोकोक्तियाँ करती हुए लड़किया दिखाई दे रही हैं। परदे --

भी दिखाई दे रही हैं बल्प दिखाई दे रहे हैं लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं।

ये पत्थर की इमारत दिखाई दे रही है बोहोत बड़ी बनी हुई है। पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और --

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है। बोहोत सारे घने पेड़ पौधे है कुछ छोटे पेड़ पौधे है। कुछ बड़ी पत्तियां छोटी पत्तियां दिखाई दे रही है।